पार्क में बहुत सारा फुल लगा हुआ है गेंदा का फुल ज्यादातर दिख रहा है इसमें पार्क में राउंड राउंड करके दो तीन चार पांच छे सात ऐसे करके लगा बना हुआ है।